आप लग रहे हैं आप |

एके दू चकिया गाड़ी एकसाथ --

कितना मस्त लग रहा है यहाँ पर देखने लायक हैकितना मस्त है कितना सुन्दर है।

काम कर रहे है कितना अच्छा काम कर रहे है देखिये सब अपना सेल्फी लिए है ड्रेस में सब ड्रेस में सेल्फी ले रहे है कि मत पूछिए बहुत बढ़िया लग रहे है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

पानी में बहाव तो बहुत बढ़िया है इतना अच्छा है मत पूछो बहुत अच्छा पानी है आगे देखिए कितनी सुंदर पानी है ये पानी में नाव है ये नाव --

दिखने में बहोत सुंदर लग रहा है देखने लायक लग रहा है आप भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा है।

यहां पे हरा-भरा दिख रहा है कितना सुंदर लग रहा है मत पूछिए बहुत बढ़िया लग रहा है इतना अच्छा --

यह देखिये ईटा है ईटा का इतना अच्छा लगा हुआ है मत पूछो बहुत भयानक लगल है बहुत सुन्दर लगल है।

ये पहाड़ है ये पहाड़ है तो इतना अच्छा पहाड़ है की मत पूछिए केला का पेड़ दिख रहा है बेर का पेड़ शायद है बेरे है।

लेकिन वहाँ देखिये पहाड़ पर बेर है इधर देखिए ईटा का सीढ़ी है जाली वाला बहुत अच्छा है बहुत पुराना है लेकिन बहुत बढियाँ है बहुत सुंदर है बहुत अच्छा है।

कितना अच्छा मस्त भयानक लग रहा है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है मत पूछिए बहुत बढ़िया है बहुत सुन्दर है आप लोग भी देखिये न कितना मस्त है इतना अच्छा लग रहा है देखने में।

वहाँ पे देखिये ये टैक्सी है मतलब ऑटो और इसपे कोई मशीन लाद के ले के जा रहें हैं कहीं दूर जा रहें हैं बहुत अच्छा लग रहा है लेके जा रहें हैं बहुत सुन्दर जगह लेके जा रहें हैं।

ये पार्क है ये पेड़ कितना मस्त है ये देखिए लेप्टस का पेड़ है ये ये इसको हम पहचानते हैं ये लेप्टस का पेड़ है।

इसपे ना आदमी बैठेगा लिखेगा पढ़ेगा बढ़िया-बढ़िया संस्कारी संस्कार सीखेगा दिमाग होगा।

और यहाँ देखिए कितना अच्छा व्यवस्था है बहुत अच्छा है लेकिन सैलून बैलून बड़ी बढ़िया है।

ये कॉलेज इतना अच्छा कॉलेज है कि मत पूछिए अच्छा देखिए क्या लगा हुआ --